यह एक बहुत बड़ी दुकान है जहां पर बहुत सारी अगरबत्तियां रखी हुई हैं और मैगी भी रखी है।

इस रोड पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।

इन्होंने बहुत सारे जेवर पहने हुए हैं।

ट्रेन के बगल में एक लाल रंग का लोहा लगा हुआ है।

औरत के बगल में आसमानी कलर की कार खड़ी है।

कुर्सियों के बगल में एक टेबल पड़ी--

इसमें एक पीले रंग की गाड़ी बनी हुई है।

जिनका रंग पीला और काला है उनके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

दरवाजे के बगल में एक पेड़ लगा--

गाड़ी के बगल में एक नीला और सफेद रंग का छाता लगा हुआ है।